लाल लाल कलर का पानी दिखाई दे रहा है।

काफी सारे फूल दिखाई दे रहे हैं लाइटें लगी हुई है।

काफी सारी पेन रबर दिखाई दे रहे हैं।

काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसमें काफी सारा सामान दिखाई दे रहा है।

कुछ गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं बिजली का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

दुकानों के ऊपर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है कुछ तारे दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

दीवार पर एक सुंदर शीशा दिखाई दे रहा है।

बैठने वाली पट्टरी जाली वाली बाल्टीयां दिखाई दे रही हैं।

उसमें काफी सारे बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं एक छोटा सा पुल दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ लाइटें दिखाई दे रही है कुछ पंखे दिखाई दे रहे हैं।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

बिजली के दो खंबे दिखाई दे रहे हैं।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

लाइट लगी हुई है कुछ पंखे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है बिजली के काफी सारे खंबे दिखाई दे रहे है।

यहां पर शादी की डेकोरेशन की गई है।

यह एक दुकान है इसमें काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

चेयर दिखाई दे रही है एक लकड़ी की बड़ी टेबल दिखाई दे रही है।

कुछ कम लैपटॉप दिखाई दे रहे हैं।

काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं नीचे हरी भरी घास दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के खम्भे दिखाई दे रहे हैं एक सड़क दिखाई दे रही है।

यहां पर शादी की डेकोरेशन की गई है।

यहां पर मुझे एक लोहे का बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं एक कैमरा दिखाई दे रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट है यहां पर मुझे कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।